यहाँ पर हमें सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें लिखा है अमन एंटरप्राइजेज और हमें यहाँ पर कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

--कपडे अच्छे रैको में जमे हुए दिखाई दे रहें है हमें ये झूमर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं और चार- पाँच कुर्सियाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ हमें एक झूला दिखाई दे रहा है ये झूला बहुत बड़ा है।

यहाँ पर हमें दो डमी खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक डमी रेड कलर की साड़ी पहने हुए दिख रही है एक डमी ब्लैक कलर का लहंगा पहने हुए दिखाई दे रही है बहोत सारी कुर्सियां रखे हुए दिखाई दे रही है और हमें बहोत सारी साड़ियां --

यहाँ पर हमें सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है गूगल मेंस --

ऊपर झूमर बहुत शुंदर लग रहा है बहुत शारे ऊपर लाइटिंग भी जलाई दे रहे हैं हमें सीढ़ियां दिख रही है।

इस इमेज में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के ऊपर एक गुमंद बनी हुई दिख रही है।

दिख रहे हैं ऊपर हमें खोखो में भी कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक सफेद कलर का गद्दा बिछा हुआ है ब्लैक कलर की चिप --

और ऊपर हमें लाइटिंग दिखाई दे रही है यह बहुत सुंदर शॉप लग रही है साड़ियां कपड़े सभी टंगे हुए दिख रहे है हैंडल से--